झरने के साइड में बहुत बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं।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

साइड में एक सलुन का पोस्टर लगा हुआ है।

टेबल के ऊपर कुछ कागजे रख रखी हुई है।

काफी सारा टेबल है बहुत सारा चेयर है।

बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

एक तौलिया है जो कि सीढ़ी में टंगा हुआ है।

एक ने ब्लू कलर का साड़ी पहना--

यहां पे पहाड़ भी दिखाई दे रहे है पहाड़ में हरा हरा हरा भरा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं बहुत सारी लाइटे जल रही हैं।

पानी का कलर हरा दिखाई दे रहा है।

जिसका केबिन है वो कुछ काम कर रही है एक बॉटल है एक चेयर एक्स्ट्रा है।

और बहुत सारे आदमी है जोकि दिखाई नहीं दे रहे हैं।

पौधा भी दिखाई दे रहा है बड़ा सा साइड में एक बड़ा सा घर भी है।

जूते भी दिखाई दे रहे हैं।

ये भारत सरकार का कार्यालय है।

कार्यालय के अंदर में दो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं।